और मुझे बहोत सारे पौधे दिख रहे हैं और बहोत--

और मुझे दीवार पर कुछ पेंटिंग बनी हुई दिख रही है।

उसके अंदर बहोत सारे कांच के जार दिख रहें हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे लकड़ी के प्लाई दिख रहे हैं।

और मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बिल्डिंग दिख रहा है जो काफी बड़ा है और काफी दूर है।

यहां पर मुझे बहोत सारे टेबल दिख रहे हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं।

मुझे बहोत सारे पेड़ और पौधे दिख रहे हैं और मुझे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बैनर दिख रहा है।

पीछे के तरफ मुझे दूसरे बिल्डिंग भी दिख रहे हैं।

और मुझे बहुत सारे तोते दिख रहे हैं।

मुझे बहोत सारे कॉपी किताब दिख रहे हैं।

कटोरी दिख रखी है जिसके अंदर चटनी रखी हुई है उस चटनी का रंग हरा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है और यहां पर बहोत सारे झूले हैं।

मुझे एक बड़ा सा पोस्टर दिख रहा है।